खेल-कूद रहा है जो है की ठंडी का मौसम आने वाला है लग रहा है बारिश --

कोई चिड़ियाँ है। मछली पकड़ने के लिए अपने भोजन के लिए तलाश में है जो है।

हम भी खाते हैं। लोग खाते हैं। लोग लेने के लिए आये हैं। सब को खाना चाहिए मछरी ।

कोई जन्मदिन या बड्डे या पार्टी नया साल मुबारक हो सब लोग मना रहे हैं खा पी रहे हैं।

ये बड़ी मछली है इसको खाना चाहिए भून कर तल कर जैसे आप इच्छा करे वैसे खाएं। बहोत टेस्टी मछलियाँ हो --

भरे-भरे पानी तालाब है। सूर्य निकल रहा --

लों शीश नेवाते हैं यहाँ।

उम गरा है जो है शादी समारोह चल रहा है। साउथ का है गरा।